और रेड कलर का पंजाबी पहन कर अ लड़का लोग खड़ा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक बड़ा सा नदी दिख रहा है। ऊपर एक ब्रिज दिख रहा है जिसका कलर मैंरून कलर का है।

और साइड में भी बहुत सारे ब्रिज दिख रहा है और एक के सामने जहाज दिख रहा है।

और अंधेरा है लाइट लगा हुआ है बहुत सारे।

और पेड़ दिख रहा है पीछे दो ऑटो दिख रहा है। बोहोत सारे आदमी दिख रहा है। बीचों बीच --

व्हाइट कलर का केक है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और गोल्डन कलर का पत्ता है बहुत सुंदर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक घर दिख रहा है जो येलो कलर का है और एक ग्राउंड है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक ब्लड बैंक का एक पोस्टर लगा हुआ है।